बहुत ही बढिया मैकेनिक लोग हौंडा की गाड़ी की रिपेयरिंग करते हैं और दूर दूर से लोग अपनी गाड़ी रिपेयरिंग कराने के लिए आते हैं यहाँ का रिपेयरिंग अच्छा और सस्ता होता है ।

यह एक बहुत ही अच्छा सा हमे चित्र दिखाया गया है|